एक लड़का स्टूडेंट कल्ब है जो सफ़ेद कलर का शर्ट पहना हुआ है बहुत सारे स्टूडेंट क्लब हेय पीछे से जाली लगा हुआ --

एकठो जाली दिखाइल बा हरे कलर का ऊपर उसके पीछे कुछ पेड़ लगेएल बा नीचे जमीन दिखेएल बा रोड भी दिखेएल बा ।

मेंगो दिख रहा है निचे कार्पेट बीछा है काला और सफ़ेद कलर का।

टायर दिखे बा नीचे फर्श दिखे बा।

ऊपर टिन के शेड दिखाई दे रहें हैं उसके पास एक काला कलर का दिखेगा।

लाल कलर का बिल्डिंग दिखै बा आसमान में सफ़ेद कलर का कांच दिखै बा।

इसके पीछे बिल्डिंग दिखाइले बा कुछ दो-तीन ठो गाड़ियां दिखाइले बा।

मैदान दिखेल बा मैदान मे एक गय्या का बछड़ा दिखेलबा ऊपर आसमान दिखेलबा।

ऊपर आसमान दिखेएले बा पीछे कुछु पत्ती देखएले बा।

एक ठो बड़ा सा नदी दिखेल जेके अंदर बहुत सारे लोग दिखेल बा।

एकठो लड़का दिखेल बा जेब में काला कलर का सेंडो काला कलर का पैंट पहनील बा ।

कोई फूल और लाइटे दिख रही --

बड़े-बड़े पत्थर दिखेल बा तीन ठो लोग दिखेल बा ।

और रास्ता बना हुआ दिखाई दे बा खेत बाउंड्री पुरा आसमान दिखाई --